यहाँ हमे एक प्लम्बर नजर आ रहा है।

कुछ व्यक्ति सामने खड़े हुए है दुकान के--

और आस-पास घर नजर आ रहे है। बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहे है।

यहाँ हमे एक मंदिर बना हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ हमे एक अ जन्मदिन की सजावट दिखाई दे रही है।

मंच नजर आ रहा है जिसपे सेंटकलोस खड़ा हुआ है। कुछ प्रोग्राम मनाया जा रहा है।

और उसके सामने कूलर भी रखा हुआ है। उसमे हरी व लाल रंग की लाइट जल रही है।

हिरन की बड़ी बड़ी सिंग है आसपास बोहोत सारे पेड़ है।

यहाँ हमे एक घना जंगल नज़र आ रहा है जिसमे बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

यहाँ हमे एक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है जिसमे कई बच्चे व काफी बड़े नज़र आ रहे है।

इसमें कई सारा सामान जमा हुआ नज़र आ रहा है।